यहां सैलून दिखाई दे रहा है | सैलून में तीन लड़के दिखाई दे रहे हैं और ब्लैक कलर का सोफा दिखाई दे रहा है।

एक साइड में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है | उसके सामने एक वाइट कलर की सुमो खड़ी हैं | कुछ कार दिखाई दे रही है।